दीवार पे नीचे ना दीवार टायर्स की जगह पे बिछाया हुआ नजर आ रहा है।

दूसरा तीन सौ पचहत्तर रेट लिखा हुआ है फिर दूसरा बैनर पे तीन सौ नवानवे रेट लिख रहा है।

ए सी-जी-एल एल-डी-सी ए-सी -एच- एस-एल एम-टी-एस वैल्यू एंड --

मुझे यहां एक योगा क्लास दिख रहा है स्टूडियो योगा स्टूडियो दिख रहा है जिसमें--

मुझे यहां जो शादी वाले जोड़े बैठते हैं वो चेयर नजर आ रही है।

और पीछे चेयर के डेकोरेशन किया है ऊपर चेयर के डेकोरेशन किया है फ्लावर से डेकोरेशन किया है।

मुझे इधर आधा ब्रिज दिखाई दे रहा है ब्रिज के नीचे काफी ट्रैफिक है वो दिखाई दे रहा है ट्रैफिक में से--

ये रेड और वाइट और ब्लू कलर के बालूनस दिखाई दे रहे हैं ऑफ वाइट और रेड कलर के इसमें--

शटल के ऊपर एग्जिट बंगले स्टाइल में दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां एक बैनर नजर आ रहा है जिस पर लिखा है लक्ष्मी ऑटो वर्कशॉप यहां डीजल --

और बीचोंबीच उसके आधी नाव दिख रही है और एक--

नाव चला चालक और एक बंदा नाव में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है।

मुझे यहां काफी वाइट कलर में वाइट कलर के बीचोंबीच ना सर्कल में वाशिंग मशीन स्टाइल के मॉडल में कुछ मशीनरी दिख रही है।

ग्रीन और रेड कपड़े से डेकोरेशन किया गया है वहां सीढ़ी चार पांच चढ़के हुए स्टेज बनाया गया है।

मुझे एक कार दिख रही है जो एक्सीडेंटल कार दिख रही है उसमें काफी कार में एक्सीडेंट में वो--

काफी कुछ मशीनरीज टूटी हुई अंदर नजर आ रही है ग्रे एंड सिल्वर कार का कलर नजर आ रहा है और पीछे कच्चा रास्ता नजर आ रहा है।

एक तरफ से पेट्रोल भरवा के निकलते हुए टू व्हीलर्स नजर आ रही है।

और अलग-अलग स्टाइल में जाली लगी हुई है ग्रीन और लोहे की प्लास्टिक की जाली लगी हुई है।

और लूडो उस पर ड्राइंग किया हुआ है और वो टैटू ग्रीन शब्दों में लिखा गया है ब्लैक कलर का बोर्ड है और वाइट कलर का डोर है।

और वो डोर बंदा बंद है और रेलिंग स्टील कलर के सीढ़ियां चढ़ के जाके जाने वाला वे --

बूढ़ा बंदा बैठा है और एक लेडीज बूढ़ी बैठी है और उससे आगे कोई लाइन में खड़ा है वो दिख रहा है।

मुझे यहां पे ग्रीन मैदान नजर आ रहा है जिसमें सनशाइन हो रही है जिसमें आजू-बाजू काफी पेड़ लगे हुए हैं।

ने पेड़ गार्डन के अंदर काफी बड़ी-बड़ी चेयर रखी हुई है ये व्यू नजर आ रहा है।